इस पिक्चर में एक डॉक्टर है एक कुर्सी है टेबुल है बहुत सारी दवाइया है मरीज है डॉक्टर मरीजों को देख रहे है।

बिल्डिंग के साइड में पहाड़ है पहाड़ों के ऊपर पत्थर हैं बड़े-बड़े और सामने मैदान जैसे है।

सामने एक पार्किंग दिख रही है। पार्किंग में बहोत सारी कार हैंखड़ी हैं।

ने एक पार्क है जिसमें बच्चों के झूले लगे हैं। एक ऑरेंज कलर का झूला है एक ब्लू कलर का झूला है और एक मल्टी कलर का झूला है ।

सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है। ग्राउंड में बहोत बड़े-बड़े जीने लगे हैं। साइड में बहोत सारे लड़के मैच खेल रहे हैं। सामने एक लड़का येलो कलर और मैरून कलर के ड्रेस में हैं।